इसमें नीले कलर का बोर्ड लगा है लगाया गया है। यह इसकी दीवाल पिले रंग से पेंट की गई है।

यह दृश्य काफी सुन्दर लग रहा है ऐसा लग रहा कि यह बाजार का ही दृश्य है परन्तु बहुत ही दूर से इसकी पिक्चर ली गई है।

लड़का काफी छोटा है यहाँ आस-पास रंग-बिरंगा वस्तुए दिखने में काफी सुंदर लग रही है।

यह दृश्य काफी सुन्दर लग रहा है देखने में यह प्राकृतिक दृश्य लग रहा है इसमें हरियाली और एक ग्रे कलर में कुछ अलग सा ही कलाकारी की गई है।

यहाँ एक आदमी नजर आ रहा है जो सामले रंग का है यह क्रीम कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ एक आदमी नजर आरहा है जो सावले रंग का है यह क्रीम कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

इसको घेरा गया है और इसपे एक दरवाजा लगवाया गया है।

और यह गुलाबी कलर का शर्ट पहना हुआ है और जींस पहना हुआ है यहां पर बाल कटवाते हुए एक आदमी बात कर रहा है जो कि नाई खड़ा है और वह बैठ के बात कर रहा है।

आदमी जो है नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है वह चेयर पे बैठा है बाल कटबाने के --

यहाँ एक बहुत ही बड़ा छप्पर डाला गया है जिसमें कई-कई सारे खम्बे लगाए गए है यहाँ पे कई लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी-बड़ी सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।